और एक लेडिस खड़ी हुई है और एक ठेले पर बोरिया लदी हुई है।

बोर्ड लगा हुआ लिखा हुआ इस पे लिखा है श्री अग्रसेन भवन--

पेड़ लगा हुआ है और पीछे से लाइट जल रही है।

जहां पे मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है इधर शीशा लगा हुआ है उसी में मोटरसाइकिल दिख रहा है।

एक लोक अंदर बैठे हुए है सिलाई की दुकान है सिलाई कर रहे हैं।

जहां पर बोर्ड लगे हुए तीन चार ठो और लिखा है नाइन --

रैलिंग बनी हुई हैं और पेड़ लगे हुए वहां पीछे एक नारियल का पेड़ लगा हुआ है दूसरा पेड़ लगा हुआ एक मकान और बना हुआ। एक लोग खड़े हैं तीन लोग --

यहां पर हम देख पा रहे हैं तो यह एक पहाड़ है जिस पे से पानी गिर रहा है झरना और पेड़ लगे हुए हैं देख लीजिए घास लगी हुई है।

इधर भी रखा हुआ है माता जी का फोटो रखा हुआ है देख लीजिए--

यहां पर हम देख पा रहे हैं तो यहां पर पेड़ लगा हुआ है।

और यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर पंडाल की तरह लगा हुआ हैं।

यहां पर हम देख पा रहे तो यह एक क्लासरूमस है देख लीजिए बेंच वेंच नहीं है लेकिन एक बोर्ड लगा हुआ है।

आइए देखिए साइकिल की तरह खड़े हुए हैं जिम करने वाले मशीने लगी हुई है बहुत सारी।

क्यू_आर कोड रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं देख पा रहे हैं।